और पेड़ पौधे भी हैं पेड़ काफी हरे भरे पेड़ है इसमें काफी सारे ऊपर आसमान बादल है।

ओर काउंटर बना हुआ है काउंटर के उस तरफ एक लड़का खड़ा हुआ है।